उमम पिक खिजवा रक्खा हुआ है और काफी सारे बुक रखे हुए है दुकानदार हाथ में वाइट कलर का मोबाइल और चेक शर्ट जीन्स पहने हुए बैठा हुआ है ।

जिस ये रोड हाईवे है यहां ऊपर ब्रिज है ये कहां का है ये कह नहीं सकते लेकिन ये नजारा हमे शायद लग रहा है ये पटना का है शायद हैं।

कंक्रीट ढलाई छत हो रहा है काफी सारे मजदूर खड़े हैं मशीन लगी हुई है ढलाई की चारों ओर सब लगा हुआ है।